यह दृश्य राखी की दुकान का प्रतीत हो रहा है जिसमें बहुत सी रंग बिरंगी राखियां टंगी हुई हैं।

यह दृश्य केक की दुकान का प्रतीत हो रहा है जिसमें बहुत से केक रखे हुए हैं।

आकाशवाणी के अन्दर बहोत से बड़े बड़े हरे विशाल पेड़ लगे हुए है।

इलाज वाटर पार्क के अंदर एक झंडा लगा हुआ है जिसका रंग पीला है।

नींबू का रंग हरा और पीला है नींबू के थोड़ा सा ऊपर अनार रखे हुए हैं अनार का रंग लाल है।

मंदिर के बाहर दीवार पर एक बोर्ड पर लिखा है आप कैमरे की नजर में हैं।

और ऊपर मूंगे रखे गए हैं जिनका रंग गोल्डन है।

यह दृश्य एक परचून की दुकान का प्रतीत हो रहा है।

दुकान के बाहर बहोत सी बोरियां लगी हुई है और बोरियों में बहोत सा सामान रखा हुआ है।

नहेर के पास बहोत सी हरियाली है नहेर के पास बहोत से बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए नहेर के पास एक कुर्सी रखी हुई है।

और वहीं पर एक बड़ा सा मकान बना हुआ है।

एक अह औरत व्हाइट कलर की पोशाक पहने वहां पर खड़ी हुई है।

जिम में कुछ व्यक्ति हैं एक व्यक्ति ने काले कलर के कपड़े पहन रखे हैं।

कुछ लोग पैदल चल रहे हैं और कुछ लोग बाइक से चल रहे हैं पुल के किनारे दो व्यक्ति खड़े हैं।

और एक बाइक खड़ी है जिसका रंग काला और सफेद है पूल के आस पास बहुत सी हरियाली है।

और नदी के बीच में एक नांव है नांव पर दो व्यक्ति सवार हैं।

यह द्रस्य एक खिलौने की दुकान का प्रतीत हो रहा है।

दुकान के अंदर बहुत सी लाइटें लगी हुई हैं जिनका रंग सफेद है।

यह दृश्य एक बुक सेंटर का है।

अह यूनिवर्सल बुक सेंटर के बाहर एक स्कूटी खड़ी है सफेद रंग की।

इसमें एक व्यक्ति के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है।

और इस क्षेत्र के आसपास बहोत सी हरियाली है और लंबे लंबे पेड़ हैं।

घर के बाहर हरे नीले लाल सफेद कलर के गुब्बारे लगे हुए है।